ब्लैक कलर की बस दिखाई दे रही है बस में बहुत सारे यात्री दिखाई दे रहे एक लड़का पर चढ़ता दिखाई दे रहा है उस पर बांदीपुर टाइगर रिज़र्व लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस पर लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है और उस बंधे हुई रस्सी बंधी हुई है उस पे बहुत सारे कपड़े सूखते दिखाई दे रहे बहुत सारी लड़कियां खड़ी हुई दिखाई दे रही जो वृक्षारोपण करती हुई दिखाई दे रही हैं।

सिडिया दिखाई दे रही है गेट भी दिखाई दे रहा है एक काला कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान नीला दिखाई दे रहा है।

छोटी छोटी और बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई दिखाई दे रही नीचे बहोत सारा मैदान दिखाई दे रहा जिसमें एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।